बड़े बड़े पेड़ लगे हैं हरे भरे पेड़ हैं।

वातावरण यहां पर प्राकृतिक नजर आ रहा है।

और हरे भरे झाड़ पौधे हैं।

यह शोरूम इलेक्ट्रॉनिक्स का है जिसमें कि ऊपर की तरफ रानी कलर के बोर्ड पर व्हाइट कलर की एल_इ_डी लाइट से--

अह पानी का नदी टाइप दिखाई दे रहा है यह एक बहुत ही ज्यादा--

जहाँ पर अ एक पेड़ ओढ़ और पहाड़ भी दिखाइ दे रहे है।

यहां यह दुकानदार ब्लैक कलर के कपड़े पहना --

एक पहाड़ का इलाका पहाड़ी क्षेत्र यहां पे दिखाई दे रहा है।

जिसमे कि एक वैन खड़ी हुई है फोर व्हीलर --

अ की सैंपल्स बाहर स्टेच्यूस पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमे ड्रीम हार्ट मेंस वियर लिखा हुआ दि--

एक बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है यहां और इस पहाड़ के नीचे एक गुफा बनी हुई है।

बहोत ज्यादा भीड़ लगी हुई है।

जो की बड़ी बड़ी मशीनों से बनता हुआ नजर आ रहा है।

कुछ लोग यहाँ पर बच्चे लड़के --

इस पर सरकार एक्वा वर्ल्ड लिखा--

एक कांच भी दिख रहा हैं जो की गोल कांच हैं।